गाड़ियां खड़ी हुई हैं।

इस चित्र मेंएक गैराज नजर आ रहा है।

ये एक स्टेशनरी की दुकान है।

इस चित्र में कुछ लड़कियां दिख रही हैं।

चेक्स वाली साड़ी पहनी है।

काफी सारी औरतें नजर आ रही हैं।

लाल लकलर के कपड़े हैं।

इस चित्र में टैटू की दुकान दिख रही है।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

तेज धूप है ऑटो खड़ा हुआ है।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

पत्थर नजर आ रहे हैं।

इस चित्र में एक शोरूम --

इस चित्र में एक दुकान है।

इस चित्र में पार्क दिख रहा है।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

जहां परचूनी का सामान रखा हुआ है।